और यहां पर एक टीचर बैठी हुई जो बच्चों को देखरेख कर रही है।

और यह यह जगह देखने में बहुत ही--

यह एक स्कूल है या फिर कॉलेज जहां पढ़ाई होती है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं--

ऐसा लग रहा है कि यह एक गर्ल्स का प्रोडक्ट है।

ऐसा लग रहा है कुछ समय के लिए खड़ी हुई है और यहां हरी कलर की घास--

अंदर जाने के लिए एक रास्ता है बैठने की कुछ व्यवस्था है।

और ये फैन लगा हुआ है ऊपर सफेद कलर का--

सीलिंग है और यह देखने में बहुत ही अच्छा--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर केनरा बैंक लिखा हुआ है और यहां दो आदमी खड़े हुए हैं।